सेल्फी ले रहा हो इसके पीछे एक व्यक्ति बैठा हुआ नजर आ रहा है।

जो एक काफी बड़ी विशाल गुमब्द नजर आती अ नजर नजर आ रही है उसके सामने सीढ़िया कुछ लोग चल रहे है।

हरिला हरियाला पहाड़ है।

मुझे इस इमेज में कई सारी मछलियां नजर आ रही है जो कि जमीन पर रखी हुई है।

ये नीलगाय की मूर्ति नजर आ रही है और एक बाघ की मूर्ति और एक --

धुप नजर आ रही है मुझे ऐसे में इसके अंदर।

क्रिकेट की पिच नजर आ रही है तीन स्टाम्पस नजर आ रहे हैं।

और एक लड़के के हाथ में घड़ी पहना हुआ है।

और इसके कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहा है मुझे।